बहोत बढ़िया सुंदर गार्डन दिखता है आसमान में ब्ल्यू कलर का बहुत शाइनिंग आता हैं पेड़ और पौधे खिले हुए हैं।